व्हाइट ऑरेंज और भी कलरो कि अंदर भी बुके दिखाई दे रहे है। नीचे ए भी एक व्हाइट कलर की टेबल रखी हुई है।

इस फोटो में बहोत सारे डोरमैट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बहोत सारी है अलग-अलग कलर्स की है अलग-अलग शेप्स की है अलग-अलग प्राइसेस की है।

छोटी छोटी झाडीया नज़र आ रहे है जो की इक्वल शेप मे क कटी हुई है नीचे ब्लॉक लगे हुए है पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

आ इस पिक्चर में पीछे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है हे बाहर गार्डेन बहुत सारे घासें--

सारे छोटे छोटे प्लांट्स अलग अलग शेप के लगे हुए है बड़े बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे है और बाहर ब्लॉग और कुछ लोग भी नज़र आ रहे है।

बकरीयो के आसपास जालीसे रेलिंग बनायी गयी है और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ है बहुत सारी बकरीया दिख रही है जो की खाना खा रही है अलग अलग कलर की है।